मुझे इस फोटो में कुछ जूते भी दिखाइ दे रहे हैं।

इस फोटो में एक नदी भी बनी हुई है।